यहां पास बहुत सारे टेबल कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर में लाइट्स वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह आदमी का आधा फेस ब्लर दिखाई दे रहा है।

यहां पास ट्रक बसे भी दिखाई दे रही है।

यहां पर सामान भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

साइड में गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यह एक ए_टी_एम वाली जगह नजर आ रही है।

कुछ बाल्टी और ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।